यह तस्वीर हमें एक रेस्टोरेंट की दिखाई दे रही है।

और हाथ में एक बांसुरी भी दिखाई दे रही है।

पार्क का दिखाई दे रहा है।

सलोन के बाहर हमे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यह तस्वीर हमें एक प्लांट वाली दुकान की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर हमें एक चर्च की नजर आ रही है।

और दो तीन आदमी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं।

हमें एक एक्स रे वाली दुकान की नजर आ रही है।

पंप के बाहर हमें एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर हमें पंप के बाहर की दिखाई दे रही है।